यहाँ पर मुझे एक लड़की नृत्य करते हुए दिखाई दे रही हैं जो कि बहुत ही सुंदर नृत्य कर रही है।

यहाँ पर मुझे पानी नाव दिखाई दे रही हैं ब्रिज दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहा है मैदान दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पर आदमी खड़े हुए हैं टैक्सियां दिखाई दे रही है एक ठेले पर मछलियां रखी हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर--